कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है बस भी दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है पहाडी भी दिखाई दे रही है जंगल भी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे एक मकान दे रहा है जिसकी दीवाल पे कलर व्हाइट हो रहा है और यहाँ पे लॉक भी लगा हुआ --

वहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर व्हाइट और ग्रीन यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे झुमर भी लगा हुआ है।

यहा पे हम बहोत सारे भगवानों की चित्र बनी हुई दिखाई दे रही है ओर यहाँ पे --

यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि पत्थर की बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे है।